और आसपास का वातावरण बहोत ही ग्रीन फूल है।

एक ही लड़की है जो डांस कर रही है जिसने पिंक कलर की ड्रेस डली हुई है और यह एक पोज में बैठी हुई हैं।

यह एक घर है जिसके साइड में तीन बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं एक ही पेड़ बहोत सुंदर और साइड में ग्रीन कलर की झाड़ियां से लगी हुई है और--

माइक के लिए स्पेस उखडा हुआ है और हारमोनियम वगैरा भी उखड़े हुए हैं।

यह एक पार्क की फोटो है जिसमें एक पाइप दिखाई दे रही है और आने-जाने के लिए रास्ता है उसमें सुंदर-सुंदर छोटे-छोटे फूल लगे हुए हैं पिंक कलर के रेड कलर --

टेबल्स है जिसमें आटा वगैरा रखा हुआ है और साइड में ही एक फ्रिज जिसमें--

व्हाइट कलर क कपड़े और शेलो कपड़े से बंधी हुई है डेकोरेट की हुई है।

और यहाँ बहोत गंदगी मची हुई हैं वाइट कलर की लाइनिंग से खींची हुई है येलो कलर की खींची हुई है।

यह एक पार्क की फोटो है जिसमें वीडियो कॉल लगा हुआ है फव्वारा में से पानी निकल रहा है यह एक--

पानी के अंदर ही लड़ाई हो रही है और पानी का बहाव बहुत तेज है।

यह किसी रेस्टोरेंट की फोटो है जिसमें बड़े-बड़े टेबल लगें हैं सामने टेबल और चेयर रखी हुई है।

येह बहोत ही बड़ा रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है।

यह एक बड़ी बिल्डिंग है और बिल्डिंग के साइड में ही--

किसी कार की फोटो है जिसमें की चेयरे लगी हुई है बहुत जगह--

लकड़ का फर्नीचर बना हुआ है साइड में ही किचन है और--

बिछी हुई है डस्टबिन हैं एक चेयर पड़ी हुई हैं।

साइड में ही ऊपर जाने का रास्ता है और यहां बहोत साफ सफाई है।

इस फोटो में कुछ बच्चे योगा कर रहे हैं योगा करने के लिए पैरों पर नीचे--

दिखाई दे रहे हैं और मंच में बहुत सुंदर फूलों से सजा रखा है और खुलेआम भीड़ भड़का बहोत है और साइड में ही--

डस्टबिन है और ब्लैक कलर का और स्टार्टिंग में ये कटिंग की हुई हैं --

टेलीफोन है और पीछे फोट लगी हुई डेकोरेट किया हुआ और एक पंखा भी है।

और इसमें साफ-सफाई गई है किसी और--

रेड से कलर के पत्थर लगे हुए नीचे जमीन में पीछे पेंट लगा हुआ है।

टेबल और साइड में चेयर लगी हुई है एक भैया बैठे हुए हैं।

यह ट्रेमपेस्ट लिखा हुआ है भारत पेट्रोलियम यह सीवर साफ करा जा रहा है खींचा जा रहा है अंकल साइड में बैठे हुए हैं।

एंट्री करते ही ग्रीन कलर का सीढ़ियों को सजाया गया है एंट्री गेटिं से--

लड्डू है व्हाइट कलर के बैलून लगा के फूल गुलाब--

दो अंकल बैठे हुए हैं और एक लड़का एक की कटिंग हो रही है वो सामने चेयर पे बैठा हुआ है।